यह मंदिर है यहां पे तीन मीनार भी दिख रही है आस एक जेंट्स भी खड़े हुए हैं।

यहाँ पे ढेर सारी लेडीजे बैठी हुई है उन लोगों के पास बहुत सारा समान है पूजा का।